यह एक मूवी थिएटर हाल है जोकि पूरी सीट इसकी रेड कलर की लगी हुई है बहुत सारी चेयर्स लगी --

की गई है यहां की लाइटिंग भी बहोत अच्छी बनाई गई है।--

यह एक मुर्गी फार्म है जहां पे कई सारी मुर्गियों को रखा जाता है।

साथ ही यहां पे बीच में एक तालाब टाइप का बना हुआ है जोकि इस लुक को और भी अच्छा और आकर्षक बनाता है।